प्लेटफार्म पर खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटे भी जल रही हैं। इस तस्वीर में बोहत सारे लोग --

यह तस्वीर कमरे के अंदर एक टेबल का है जिसमें टेबल के बोर्ड पर एक फ्रेम लगाया गया है।

यह स्कूल ग्रे कलर भूरे कलर और लाल रंग में रंगा गया है। इस स्कूल की बाहर बाउंड्री की गयी है जहाँ खूबसूरत पेड़ --

यह तस्वीर फार्च्यूनर गाड़ी की तस्वीर है जो सफेद रंग की है। इस तस्वीर में एक गाड़ी के पीछे दूसरी भी गाड़ी खड़ी है।

यह एक फोरर्व्हीलर कार की तस्वीर है जो टोयटो कंपनी की फारचूनर कार है।

जो नीले रंग की बनी हुई है। यह गाडी सफारी कंपनी की है जिसके पीछे के साइड हरे रंग का पर्दा भी लगाया गया है।

यह तस्वीर वी मार्ट की तस्वीर है जोकि वी मार्ट के बाहर रोड पर से खींची गई है।